एक वाइट कलर के कपड़े पहने है एक ब्लू कलर के एक ब्लैक कलर --

सामने एक टेबल रखी हुई है।

एक अंकल आंटी खड़े हुए हैं वो फोटो खिचवा रहे हैं अंकल ब --

यहाँ पे ब्लू कलर के कपड़े है वाइट कलर के कपड़े है।

और मशीन दिख रही है।

यहाँ एक औरत बैठी हुई है नीले कलर की साड़ी में शॉल ओढ़े हुए।

ये एक कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है यहा--

ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है प्रमोशन वाला--

टब रखा हुआ है जिसके ऊपर नीले कलर की चद्दर रखी हुई है।

एक ठेले पे चिप्स टंगे हुए है।

पीले कलर की शर्ट पहन के और रोड दिख रही है।

यहाँ एक टेबल के उपर एक स्केलटन रखा है ह्यूमन स्केलटन --